स्कूल में बच्चों द्वारा बनाया गया ये प्रोजेक्ट दिखने में बहोत ही सुंदर और कलरफुल सा लग रहा है इसमें बच्चों ने कलरफुल झोपड़ी बनाई है।

बड़े पौधे घास दिखाई दे रही दो डस्टबिन दिखाई दे रही है।

जो सीमेंट और रेती पत्थर ये सब उठा के कुछ लोग ऊपर की तरफ जा रहे हैं कुछ लोग उधर--

कुछ ईंटें दिखाई दे रही हैं कुछ बच्चे भी दिखाई दे रहे हैं।

रेड कलर का बोट दिखाई दे रहा है।

एक खाली संवेदान दिख रहा है यहां पर बहुत सारी कारें दिखाई दे रही हैं कुछ लोग दिखाई दे रहे हैं।

बड़े बड़े हरे से पौधे दिख रहे है।

पेड़ पौधे बिल्कुल हरे भरे से दिख रही हैं।

कलरफुल सी साड़ियाँ बहोत ही अच्छी लग रही है।

बहोत सारी कुर्सियां दिखाई दे रही है ऊपर लगी हुई लाइट्स दिखाई दे रही है।

कुछ पंखे लगे हुए दिखाई दे रहे हैं।

हरी हरी घास दिखाई दे रही है।

लाइट्स प्रॉपर है इस शॉप में एक तरफ--

उस पिक में भी एक शॉप दिखाई दे रही है जो कि कपड़ों की प्रतीत हो रही है।

इस पिक में एक बिल्डिंग दिख रही है।

इस तस्वीर में एक बाइक दिख रही है एक ड्रम दिख रहा है।

एक शॉप दिख रही है शायद वो खाली है।

अलग अलग तरह की टैटू बनाए जाते हैं वहां कुछ पोस्टर्स लगे हुए है टैटू से रिलेटेड ।

इस तस्वीर में आपको रंग बिरंगे पौधे रंग बिरंगे फूल जैसे गुलाबी नारं--

लाइटिंग्स बहोत सारी मूर्तियां बहोत सारी कलाकृतियां दिखाई दे रही है।

हरी भरी घास दिखाई दे रही है।

इ स तस्वीर में तीन दीवारें दिखाई दे रही हैं दीवारों पर की गई कलाकृति बहोत ही सुंदर दिखाई दे रही है।

और साथ में दोनों दीवारों पर गोल्डन कलर की एक कलाकृति बहोत ही सुंदर लग रही है।

सामने एक बोर्ड लगा है हुआ है।

नीचे कुछ कुर्सियां लगी हुई दिख रही है जहां पर लोग बैठे हुए दिख रहे हैं।

उपर पंखे दिखाई दे रहे है लाइट्स दिखाई दे रही है।

साइड में लगी कुछ पोस्टर्स दिखाई दे रहे हैं।

एक बिल्डिंग दिख रही है इस एक्टिवा दिख रही है।

साइड में टेंट से कवर किया गया हैं।

ऊपर ही खुल्ला आसमान दिख रहा है।